यहाँ एक छोटी सी जगह पे बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं। आधी मछलियों को तो जानवरो ने बुरी तरीके से खा लिया है गा।

पांच बार व्हाइट कलर की प्लेट खाली है ये पानी की बोतल रखी है चम्मच रखे हैं टिशू पेपर रखे हुए हैं ये।

ऐसा खूबसूरत सा गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं येलो कलर के ऑरेंज कलर के रेड कलर के बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैंगे एक बड़ा सा खंबा हैगा वहाँ पे घास उगी हुई है छोटे-छोटे से फूल भी हैंगे।

कलर का घर है खूबसूरत सा जिसमे ब्लू कलर का भी कलर हैगा छोटी-छोटी खिड़कियां बनी हुई हैंगी बालकनी ब्लैक कलर की हैगी। पेड़ लगे हुए है आस-पास साइड में एक बड़ा पेड़ है एक छोटा पेड़ हैगा।

ये एक बडा सा ग्राउंड है जहा पे एक व्हाइट कलर का घर बना हुआ हेगा पीछे एक टावर लगा हुआ है बिजली का हरे-हरे पेड़ लगे हुए है नीला-नीला आसमान हें वहा पे कुछ लोग भी कहेंगे ।

ओकरा साइड में तीन-चार टायर रखे होंगे उसके साइड में कबाड़ा रखा हुआ हैगा।

लाल कलर का ऑटो खड़ा हुआ हेगा जिसके ऊपर एक माइक भी लगा हुआ हेगा। आसपास हरे-भरे पे पेड़ होंगे नीला-नीला आसमान--

बड़ा सा हॉल है जिसमें ब्लू कलर और वाइट कलर की छत है बहुत सारी लाइटें लगी हुई है ये नीचे सोफ़े रखे हुए--

एक रूम हेंगा जहाँ पे येलो कलर की कुर्सियाँ रखी हुई हैं बड़े-बड़े ब्लैक कलर की भी कुर्सियाँ रखी हुई हेंगी उधर पांच लोग भी हेंगे जिसमें से दो लोग बैठ के फ़ोन चला रहे हेंगे और तीन लोग घूम रहे हेंगे।

ये एक माधुरीनाम का ऑटो है ब्लू कलर का| इसपे लाइट लगी हुई है| इसका एक टायर हेगा दो टायर पीछे हेंगे| पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हेंगे और नीचे रेत हेगी| पीछे एक और पीले कलर का ऑटो खड़ा हुआ हेगा |